और जिसमें कुछ ऊपर कॉबर्ड रैक बनी हुई हैं।

और स्टैंड के नीचे भी कुछ कॉबर्ड बनाए गए हैं।

और काफी सारे लोहे के पाइप लगे हुए हैं जो कि यहाँं पे --

और अभी दो-तीन चार मंजिल बन चुकी है ये कंपनी --

ये एक ऑफिस है आप देख सकते हैं यहाँं पे ए_सी लगा हुआ है।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

और सोलर पैनरो के पास कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और कुछ सोलर पैनर के नीचे भी --

और कुछ साइडों में गाड़ियाँं भी खड़ी हुई हैं ।

और कुछ डब्बों में काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

और बस के पीछे एक काफी बड़ा पेड़ नजर आ रहा हैं।

बस में बैठने के लिए घूम रहे है कुछ लोग खड़े हुए है ।

और भी काफी सारे आइटम नजर आ रहा है और हॉल में काफी सारी लाइटे भी लगी हुई है।

और काफी मात्रा में लोग-बाग खरीदारी भी कर रहे--

जिसमें काफी सारी कुर्सिया डली हुई हैं।

और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सामने ही काफी सुंदर ये स्टेज बना हुआ है।

और एक सोफा भी रखा हुआ और कुछ लोग स्टेज पे एक लड़की खड़ी हुई है।